ये जो तस्वीर है ये रात की है और हम देख सकते हैं हमें बहुत ही उम्म बड़ी सड़क है और सड़क के किनारे पेड़ों को भी देख सकते हैं।

यहां पर बहोत ही सारे बच्चों को देख सकते है जो बेंच में बैठे हुएं है और सभी ने अच्छे कपड़े लगाए है और देख सकते है एक लड़की है वह पे खड़ी हुई।

ये जो तस्वीर है ये डॉक्टर की छम्बर का जैसा कुछ लग रहा और यहां पे टेबल रखी हुई है और एक छेयर रखा हुआ है एक छेयर रखा हुआ है।